जोकि बड़ेरू डीपोट की है और जो छत है बस स्टैंड की वो वाइट कलर की है।

जो कि काफी पुराना किला है जिसकी दीवारों पर काफी सारी झाड़ियां उगी हुई हैं।